इसकी इसका रंग लाल तथा सफेद है।

नीले रंग के बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

एवं उसके ऊपर एक लैंप है।

कुछ लोग बैठ करके खाने को एंजॉय कर रहे हैं।

अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है।

एवं बोलने के लिए माइक भी है।

इनका रंग बैंगनी कलर का है।

में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स एवं अपार्टमेंट्स हैं।

अंदर की ओर सजावट लाइट से की गई है।

रैक पे बहुत सारे सामानों को सजा कर रखा गया है।

तस्वीर मे बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इसका नंबर वन जीरो जीरो जीरो है।

सभी की जड़ों को काले रंग के प्लास्टिक में बांधा गया है।

यहां चारों ओर पानी ही पानी हैं।

एवं इसका रंग आकाश से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है।

इसमें बीचों बीच एक बोर्ड है जिसके ऊपर एयरपोर्ट की ओर लिखा हुआ है।

तस्वीर में बहोत सारी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है।

अंदर की ओर से एक आदमी आता हुआ नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग पेट्रोल लेने के लिए आए हुए है।

सामने की ओर एक लाइट जलता दिखाई दे रहा है।

एक आदमी जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

सामने की ओर एक आदमी सफेद रंग के शर्ट में खड़ा है।

नीचे की टाइल सफेद एवं ब्लैक कलर की है।

सामने की ओर बहुत सारे कॉर्नर है जिसके ऊपर के_एफ_सी के_एफ_सी लिखा हुआ है।